पेड़ दिखाई दे रहे हैं हरे हरे कलर का कुछ झाड़ी भी है गोल सी--

और साथ में एक पार्किंग की जगह जिसके नीचे नीचे बहोत सारी गाड़िया पार्क होई हुई हैं।

उसकी साइड में एक मकान हैं सफेद रंग का।

बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं ऊपर एक काला सा बॉक्स बना है जिसके अंदर टंकिया रखी हुई है।

एक जग भी है ऊपर बहोत सारे बैलून रखे हुए हैं और टॉवल का कलर भी ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।

और ये पेड़ काफी सुंदर हरा दिखाई दे रहा है शायद ये केलों का पेड़ है।

और हरा हरा घास भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

और सर में पीले रंग की टोपी लगाई हुई है।

और यहां पर हमें सफेद सफेद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

जीसकी नंबर प्लेट पीले रंग की है।

सामने एक घर है जिसका छत चादरों का बना हुआ है।

और ये भैंसे आपस में लड़ते हुए दि--

जिसके ऊपर एक रॉड लगी हुई है जिसके साथ में बहुत सारे प्लास्टिक के लिफाफे लगे हुए हैं।

उसके अंदर बच्चों की खेलने का सामान रखा हुआ है।

और नीचे टेबल के ऊपर बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं। अंदर बाहर बहोत ज्यादा समान है।

और उसके दाएं बाएं बहोत सारे मकान बने हुए हैं।

एक बड़ा सा स्टील का जग है दो गिलास है।